खड़ी हुई है उनके साथ एक बच्चा भी है।

ये पेंटिंग्स अच्छी लग रही है और इसके साथ में--

ये जिम है इस जिम में बहुत सारे--

दोनों मिलकर बहोत अच्छा लग रहा--

एक छोटा सा बॉक्स डब्बा बना हुआ है।

ये पहाड़ है यहां पे बड़े बड़े पहाड़ हैं सामने एक पहाड़ है और पीछे एक पहाड़ है उसके पीछे भी एक--

इसमें बाल लगे हुए हैं इसको क्लीन करना है यह क्लीन करने पर--

यहाँ पे फंक्शन के लिए कुछ डेकोरेशन किया गया है।

यह फौजी नाम का ढाबा है जो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

एक लड़का बंदा जो बनीन पहने हुए है और ऊपर--

एक जो बड़ा गमला पीले कलर का नजर आ रहा है।

और नीचे गेट लगे हुए हैं जो वाइट और ब्लैक हैं।

लड़का खड़ा हुआ है और उसके--

एक बंगलो है इस बंगलो का गेट --

ये बड़ा लॉन है इस लॉन के अंदर--

वो क्लासेस के अलमारी है उस अलमारी के अंदर बहोत सारे डब्बे रखे हुए है।

और इसमें एक बेड डाला हुआ है उसके ऊपर पिंक कलर के जो फ्लावर्स है वो --